और कुछ छोटे-छोटे झाड़ियां है |

एक बड़ा-सा कमरा है जिसकी वाल का कलर सफ़ेद है।

और कमरे में बहोत सारे लड़के-लड़कियाँ हैं।

और ढेर सारी गेंदे के फूल हैं इसमें।

और एक आदमी टॉप पे चढ़ के खड़ा है।

ये एक सड़क है जिसपे एक रिक्शा खड़ा है।

इसपे एक ऑटो खड़ा है।

और इलेक्ट्रिक पॉल्स हैं जिसपे तार है और एक सोलर लाइट है।

ये हॉस्पिटल है जिसका वॉल का कलर सफ़ेद है।

दो लोग खड़े हैं एक आदमी फ़ोन पे बात कर रहे हैं।

और सामने में एक रोड है जिसपे एक सिल्वर कलर की कार है।

और इसपे बहुत सारे बैनर्स लगाए हुए हैं।